वाहन लगा हुआ है दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसपर अल्ट्रा फ्रेश मॉड्यूलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है और--

एक और लड़के का हाथ गाड़ी के पास है।

सफेद रंग का टेबल लगा हुआ है टेबल पर एक काले रंग का कैलकुलेटर और एक सफेद रंग का कपड़ा लगा हुआ है।

और आसपास छोटे छोटे हरे रंग के पौधे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान की फोटो है जिस पर सफेद रंग क्या--

कई सारे वॉश बेसिन पड़े हुए हैं ऊपर कई सारे नल लगे हुए हैं।

फो कई फोटो बनी हुई है बैनर के ऊपर एक मोबाइल नंबर लिखा है सेवन जीरो जीरो नाइन फोर फोर सिक्स वन थ्री थ्री ।

यहाँ पर एक छोटी सी दुकान डली हुई हैं और पास में तीन चार कुर्सियाँ लगी हुई हैं कुर्सियों के पास एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ हैं।

जिसमें हर हर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह किसी दुकान में रखे गए हैं गमलों के पीछे तीन रैक रखे हुए हैं गमलों से दो गमलों का रंग--

सफेद हैं और एक गमले का रंग ईंट जैसा है गमलों पर--